सामने एक पोस्टर है। और एक डमी भी है।

एक व्यक्ति बैठा है। दो मछली बेच रहा है। मछली जमीन पर रखी है। मछली मीडियम साइज में है।